खेत है। इधर बहुत हरियाली ही हरियाली लग रा । बहुत ही ज्यादा पेड़-पौधे नजर में आ रहे। पानी बह रही है। यह बहुत ही बड़ा लग रहा है।

पे कितनी ही अच्छी सुंदर साड़ी लग रही है। यह बहुत ही लम्बा है और सुत्ती का साड़ी लग रहा है। देखिये कितने प्रकार की कलर के साड़िया एक दो तीन चार और एक बिछाया हुआ भी है।

पाँच कलर का साड़ी एक ही जैसा पांच प्रकार बहुत ही अच्छा साड़ी। देखिये इधर धोती भी रखा गया है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की नजर आ रही है और बहुत अच्छा दिख रही है।

भूल भाग या अपना जितना भी टेंशन है इधर उधर का सब भूल भाग सब अपने डांस में लगे हैं। इस तरह मन लगाने से बहुत ही मन का इधर उधर का जितना भी बात रहता है सब खाली हो जाता है जिससे बहुत ही ज्यादा फायदा गया है। यह बहुत ही अच्छा लग रहा है।

सौ से कम नहीं हो सकता है देखिए आप आस-पास में काफी बिल्डिंग जो काफी आकर्षक नजर में आ रहे है ये सब भी काफी अच्छा लग रहा है देखने में जय हिन्द दोस्तो।

पेड़ का कुछ पत्ता यहाँ नजर में आ रहा है और देखिए कुछ पत्थर नजर में काफी आ रहा रहा है और घर जैसा नजर में पता नहीं ये क्या है? काफी अच्छा साफ-सुथरा दिख रहा --